यहां पर दो बड़े घर दिखाई दे रहे हैं।

यहां अ एक पेट्रोल पंप --

कुछ लोग बाईकों में पेट्रोल डलआ रहे --

यहां पर पहाड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पर बोहोत सारा पानी दिख रहा हैं।

बहोत हरे भरे पेड़ भी दिख रहे हैं।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

उसके बाहर एक फोर व्हीलर भी खड़ी हुई है ऊपर --

यहां पर कुछ कुर्सियां और टेबल दिख रही हैं।

कुछ पेड़ भी नज़र आ रहे हैं।

उसके अंदर कुर्सी टेबल भी दिख रहे है।